ऑटो ल रुका हुआ है उधर एक मोटरसाइकिल है यह बहुत ही सुंदर है।

जो एंट्री गेट है वो भी बहुत ही खूबसूरत--

बंडल उठाने के भी मशीन हैं ऐ बन्डर उठाने का भी हैं।